दवाई वाला है चोहराही वाला हैऔर कोला वाला है उधर चिमनी भी है और --

गरम और भी मसाला है फेवीक्विक है नमकीन बिस्कुट कुरकुरे है ।

पेड़ भी काफी हरा हैं पौधे भी हैं छोटा-छोटा घास-फूस जैसी अंदर एक लड़कियाँ हैं जो दूर से जा रही --

ये एक कार गाड़ ड्राइविंग सेंटर है यहाँ पे कई प्रकार के --

बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है दोनों ।